चर्च मैंने इसलिए बोला पीछे एक क्रॉस का साइन है।

और नीचे दरी भी बिछी हुई है फूलो वाली। बहोत ही अच्छा बहोत सुंदर।

हाई टेंशन वोल्टेज वाली --

छोटे शहरों में ऐसा होता है क्योंकि ए.टी.एम. होते हैं बहोत ही कम।

और जनता को कैश में ही सारा काम करना होता है इसलिए लाइन --

किसी बाइक वाले भाइयों की संख्या ज्यादा है। एक ऑटो रिक्शा भी है।

वाह वाह वाह क्या सुंदर तस्वीर है।

मन प्रसन्न हो जाए ऐसी तस्वीर अगर --

और दूसरी तरफ कुछ स्पोर्ट्स वियर रखा हुआ हैं। फुटबॉल वगैरह है।

स् साइकिल और बाइक वगैरा हैं।

मैं तो इसे गलत मांगता हूं।

जो बाउंड्री है उसको देखके अंदाजा लगा सकता हूं मैं कि --

बैंक ऑफ़ बड़ौदा की एक तस्वीर --

भाई एक बार और मैं कहना चाहूंगा कि ये जीव --

और अपनी राय जरा बताएं। मै तो इसको गलत मान --

ये भी किसी जू की है क्योंकि यहाँ पे बाघ --

काफी अच्छा है। देखने में अच्छा लग रहा है। भगवा रंग --

लेकिन लगभग साफ़ ही है और काफी अच्छा दिख रहा है --